इस इमेज में हमे दो शटर दिख रहे है जो बंद है और--

ये इमेज शासकीय महाविद्यालय की है इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है शासकीय महाविद्यालय--

सामने एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है हमें सफेद कलर का और एक अदमी खड़ा हुआ है शायद ये इनके सर होंगे और ऊपर हमें पंखा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही है।

ये हमे मोटर साइकल का गैराज दिख रहा है इसमे बहुत सारे सामान रखे हैं सुधारने के लिए ।

इस इमेज में हमे एक रोड दिखाई दे रहा है और हमे बहुत सारी बाइके खड़ी हुई दिखाई दे रही है और सामने एक--

इंडियन ऑइल और यहाँ हमे इ इंडियन ऑइल दिख रहा है और कुछ खंबे लगे हुए है जिसमे बल्ब लगे हुए है और हमे यहाँ हरियाली भी दिख रही है कुछ बना हुआ है।